इस सड़क को दो भागों में बाँटा गया है यहाँ पर एक भाग पर दो टेम्पो चल रही है यहाँ काफी आदमी भी घूम रहे हैं।

यह बिल्डिंग अभी खंडर बन चुका है | यह बिल्डिंग पर काफी सारे पंखे भी है ।

यहाँ पर बहुत सारे खाने-पीने के सामान मिलते हैं।

यहाँ बेड भी भाड़े पे मिलते हैं। यहाँ पर काफी मंहगा

इस ग्राउन्ड मे छोटे-छोटे पौधे हैं।

यह टोटो पैसेंजर को भी उठते है।

यहां पर बहुत से ग्राहक आकर किताब कॉपी कलम पेंसिल आदि।

इस नदी मे दो पुले है।

इस पर बहुत सारे गाड़ी भी पार होते हैं।

इस घर मे बहुत सारे आदमी हैं।